इसके अ आसपास घा अ घास और थोड़ेसे पेड़ पौधे है।

यहाँ पर मुझे बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है इस बिल्डिंग की आधे से फर्श पर महात्मा गांधी भवन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहा पर मुझे मेन चौराहे पर एक बड़ासा आ बडीसी दुकान दिखाई दे रही है।

यहा पर मुझे पुराना कार-यालय दिखाई दे रहा है पुराने कार्यालय के स जस्ट पास मे बहुत सारे पेड़ लगे हुए है।

यहाँ पर मुझे दो पुतले दिखाई दे रहे है इन दो पुतलों पुतले है।

यहा पर मुझे एक घर दिखाई दे रहा है। इस घर के दीवार पर एक बोर्ड लगा है। इस बोर्ड पर लिखा हुआ है। उ --